बड़ा सा प्रणाम लिखा हुआ है और यहां पे बच्चों की अह झूले लगे हुए हैं।

लोग अह उम्म अपना अपना सामान खरीद रहे हैं और अह मेला देख रहे हैं।

जैसे ये सबसे पहले ये हरे कलर की बोरी रखी गई है जिसपे प्राइस तीन सौ पचपन लिखा है।

पर अह पानी अह धूप की वजह से अच्छा खासा चमक रहा है।

बिल्डिंग में पूरा शीशा ही शीशा दिख रहा है।

उसका दूसरा हिस्सा सफेद कलर में है और नीचे अंडरग्राउंड बिल्डिंग भी बन रही है।

एक टिन की कोठरीनुमा बना है और इसका काला दरवाजा है।

फोर्थ फ्लोर पे साइनपॉलिश लिखा हुआ है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी दिख रही हैं।

वेलकम द स्मार्ट वर्कशॉप का एक बैनर लगा हुआ है।

जो सब्जी लेने आए हैं कुछ लोग उनके भी चेहरे अ ढके हुए।

कुछ लोग अ खाना पीना खाते पीते दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए है।

सभी अपने अपने क्राफ्ट को बनाने में बिजी है। बच्चे सारे बैठे हुए हैं।

ये किसी उम्म विश्वविद्यालय का सीन है जो रोड पर से दूर से फोटो ली गई है।

जे पार्क का चित्र है अ पार्क में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

हल्की सी रेड कलर की फर्श है और दोनों तरफ लोहे की अ दीवार छोटी छोटी दीवारें--

इसके बगल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और नीचे जो मैट बिछी हुई है।

इसमें अ घास अ बिच छोटी छोटी घास है मैदान में जिसपे अ आराम से बैठ सक --

उसके बगल में फुल टी शर्ट पहने हुए आदमी जिसके साथ में वो फोटो खींच रहा है।

ये एक बुक स्टेशनरी की किताब है।

यहां पे एक अह ये आ एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका चेहरा ढका है।

और ये किसी स्कूल के बरामदे का चित्र है अह जिसमें सभी देशभक्तों की अह फोटोज लगी हुई हैं।

कि फोटोस लगी हुई है और यहां के दरवाजे का कलर सेम है।

दुल्हन के लिए शेरवानी एंगल में टंगी हुई हैं।

तीन शेरवानी अलग तरीके की हैं। एक शेरवानी का कलर क्रीम है एक शेरवानी का कलर हल्का डार्क रेडनेस है और एक शेरवानी का कलर भी क्रीम कलर का है।

आगे किसी ए_टी_एम और एक्सिस बैंक के बाहर का सीन है।

औरि जो मेज कुर्सी पे बैठे हैं उसका कलर स्लेटी कलर का है।

हॉस्पिटल की बिंदी बिल्डिंग तीन फ्लोर की है जो तीनों फ्लोर साफ साफ दिख रहे।

अलमीरा में कुछ किताबें लगी हुई है और एक सोफा पड़ा हुआ है।

कई तरीके की चीजें रखी हुई हैं अलमारी में कुछ पेन रखे हुए हैं।

फेविकोल भी रखे हुए है नीचे अ घड़ी साबुन और मंजन वगैरा भी रखा हुआ है।

ये कुवि अ जू सा लग रहा है अ अजीब सा सफेद कलर में।

मुझे मैं इसका नाम नहीं जानती। यह कोई जीव है।

और मछली खरीदने के लिए कुछ कस्टमर भी खड़े हुए हैं।

उसके किनारे किनारे कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं और सड़क पे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

जो घास का मैदान है वो छोटी छोटी घास है।